एक टी_वी है टी_वी के नीचे स्विच है और एक पर्दा लगा हुआ है जोकि व्हाइट कलर का है एक बेड --